यह एक वेडिंग डेकोरेशन का दृश्य दिखाई दे रहा है।

के बाहर कुछ पोस्टर लगाने का दृश्य दिखाई दे रहा है।

जिसके सामने चार रैंक है रखा कपड़ा का दृश्य दिखाई दे रहा है।

बाहर कुछ लोग इंतजार करने का दृश्य दिखाई दे रहा है।

सामने एक बिल्डिंग दिख रहा है।

यह एक मेडिकल का बाहर का दृश्य दिखाई दे रहा है।

सामने एक बल का दृश्य दिख रहा है।

के अंदर ब्ल्यू लाइट जलने का दृश्य दिखाई दे रहा है।